तस्वीर में कुछ लोगों को गाने गाते हुए दिखायी दे रहे हैं।

यह तस्वीर बच्चों द्वारा कुछ निर्माण किए जाने की विधि को दिखा रहा है जहां पर एक शिछिका खरी हुयी है एवं पीछे की और कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैं।

एवम उसके बगल पे बहुत से बाइक खड़ी हैं एवम साथ में एक साइकिल भी खड़ी है पीछे की साइड एक लेडीज बैठी हुयी है।

यह तस्वीर एक प्रार्थना स्थल की हैं जहाँ पर दो लडकियाँ नीचे बैठ कर प्रार्थना कर रही हैं।